स्लाइड्स में खेलने में काफी मजा आता है और बच्चो को काफी मजा आता है ये देख सकते है आप इतना बड़ा पार्क है इसमें स्लाइड्स बहुत सारी स्लाइड्स रखी हुई है यहाँ पे लोग घूमने के लिए मस्ती करने के लिए आये हुए है यहाँ पे पेड़-पौधे भी लगे है जैसे की आप देख सकते है।

ये डांस अकेडमी है यहाँ कहाँ ये कहाँ की डांस अकेडमी है छत्तीसगढ़ के डांस अकेडमी है यहाँ पे आप देख सकते है कि बच्चे यहाँ पे डांस अकेडमी में डांस सिखने आये है और बहुत छोटे - छोटे बच्चे है कितने प्यारे लग रहे हैं।